शर्टर है और एक गेट दिख रहा है।

प्लेट्स रखी हैं प्लेट्स पे अ वेजिटेबल्स वगैरह रखे हुए हैं।

ब्लू कलर के रेड कलर के पर्दे लगे हैं।

और बाहर अह चेयर्स वगैरह लगी हैं रेड कलर की लाइट्स है टेबल है कुर्सी हैं।

और पीछे बैकग्राउंड पे रेड कलर का पर्दा है और फिर आगे व्हाइट पर्दे पे क्रीम कलर के--

दो सोफे की अअ चेयर्स हैं जिस पे येलो कलर के--

कबर्ड से एक शेड डलबना है उसमें--

उम् बोर्ड लगा है जिस पे एक लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है नीचे एक अअबॉयज है उसके सामने एक पैर है।

एक अये कैबिन है कैबिन मेंअ थ्री चैर्स है।

सामने अह ब्रिज टाइप का पुल बना है पुल पे लोग हैं पेड़ लगे हुए हैं।

नीचे काफी लोग चेयर पे भी बैठे हैं एक बॉइस खड़ा हुआ है।

ये एक कला भवन है इसमें व्हाइट कलर अ की पेंटिंग है।

एक मंदिर है मंदिर में अम् पूजा चल रही है।

और कुछ फोर बॉयज खड़े है कैमरामैन एक कैमरा ले कर खड़ा है। एक--

औरउम्डेरी मिल्क है क्रेक जेक है काफी चॉकलेट लगी हुई हैं।

और खूब बड़ा अअ क्लासरूम है ये--

ग्रीन कलर की दीवाल है येलो पट्टी है बाहर वाइट और ब्लैक गेट लगा हुआ हैऔर बाहर येलो कलर का अअ नीचे वाइट वो है।

ये एक नर्स हॉस्टल है और इस नर्स हॉस्टल में अह येलो कलर की दीवाल है दो --

ये एक आइसक्रीम कैफे है जहां फोर बॉयज खड़े हुए हैं एक एक्टिवा खड़ी हुई है एक डस्टबिन रखा हुआ है।

चेयर है टेबल है और ब्लैक कलर की पैंटिंग है।

ब्लू अ रेड कलर की बस है येलो कलर की बस है और ऊपर बिचे लाइट लगी है शेड लगा हुआ है।

अ दो अ गर्ल्स और बॉयज बैठे हैं टेबल लगा है टी_वी है।

ये एक क्लासरूम है इस क्लासरूम में अ एक टेबल है और टेबल के आसपास ब्लैक कलर की चेयर्स है एक कबर्ड बना हुआ है वाइट कलर का बोर्ड है।